और कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

सोफे का रंग सिल्वर कलर का है।

जो लकड़ी से बना हुआ है। यहां धूप आ रही है।

जहां बहोत सारे फूल भी लगे हुए हैं।

और यहां कुछ मोटे भी लगी हुई हैं।